और कुछ पुरुष जा रहे हैं और बहुत सारे सजावट है जो लाइट और पत्तों की हुई है ऊपर लकड़िया लगीं हैं।

लिखा हुआ है सामने एक कांच का गेट है एक कार खड़ी हुई है जिसका कलर सफ़ेद है।

इस तस्वीर में हमें तीन झंडे दिखाई दे रहा है जो एक चे चबूतरे पे लगे है झंडे का कलर एक का लाल सफेद और एक का --

नीला है। सामने एक बड़ा अ बड़ा हम्म किला दिखाई दे रहा है।

बोहोत सारे व्यक्ति दिखाई दे रहा है। कुछ व्यकित खड़े है कुछ व्यकित बैठे हैं कुछ आ रहे है और कुछ जा रहे है। रात का समय है।

येहे तस्वीर एक पेट्रोल टैंक की है। जिसमे पेट्रोल भरवाने के लिए गाड़ियां आ रही हैं और पेट्रोल

इस तस्वीर में हमें बोहोत सारी बाइक दिखाई दे रही है जिसमे बोहोत सारे लोग भी दिखाई दे रहे है। कुछ बाइक को चेक कर रहे है। यह एक अ --

सर्विस सेंटर है जिसपे बाइक को चेक किया जा रहा है एक व्यक्ति सामने से आ रहा है जिसने गुलाबी कलर की शर्ट पहनी हुई है।